यहां पे गिन्नी फायर रोड जो यहां पे लोग हैं तीन लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे और यहां पे काले कलर के कुर्सियां हैं और यहां पे भी हैं।

और यहां पे एटम बम भी है जो पड़ा है यहां पे जो और यहां पे मोबाइल नंबर भी लिख गया है और एक चीज फोटो भी लगाया यहां पे उपर साइड --

वाइट कलर और येलो कलर कलर मारा गया है जो टेबल को येलो है और पूरी तरह से वाइट नजर आ रहा है यहां पे दीवारों को लाइटिंग चालू है।

और यहां पे भी है जो पोस्टर गाढ़ा हुआ है जाने के लिए दरवाजा--

लगाया हुआ है और यहां पे लाइटिंग भी है और यहां पे बैठने के लिए चेयर है सामने भी यहां पे--

यहां पे एक बहुत गर्दी नजर आ रही है जो यहां पे अह जो रिक्शा हैं येलो ग्रीन कलर के कॉम्बीनेशन में बहुत सारे रिक्शे ठहरे हुए हैं।

यहां पे वो स्कूल के बच्चे जो है यहां पे गेम भी है बहोत सारे स्कूल के बच्चे टीचर्स आये हुएं हैं हमे है --

यहां पे एक होटल है होटल में यहां पे वो टेबल हैं टेबल के ऊपर यहां पे पराठा खाने हैं लोग--

अंक पठान कोट लिखा गया है यहाँ पे और यहाँ पे पीछे साइड एक बड़ा सा घर भी है जो पिंक कलर का है।

वो यहां पे अलग अलग किस्म के यहां पे मोबाइल एक आदमी मोबाइल करके दिखा रहा है।

और यहां पे बच्चों के खेलने के लिए भी हैं स्पाइडर मैन है और गुड़िया है यहां पे।

पेड़ा है लड्डू है और यहां पे सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगा है व्हाइट कलर की दीवाल है और यहां पे लाइटिंग चालू है और वो जो वाइट कलर के लाइटिंग है।

यहां पे साइकिल है जो बच्चों के लिए भी हैं बड़ों के लिए भी साइकिल लगे जो कैरेट लगा हुआ है साइकिल को और यहां पे पिंक कलर के साइकिल है।